और यहां पर बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं बड़े बड़े पेड़ हैं और यहां खंभा भी है।

यह एक किराना दुकान का दृश्य है।

कुछ जगह में सिर्फ मिट्टी दिखाई दे रही है।

अ डीज़ल की दो मशीनें लगी हुई हैं यहां पर फायर सिलेंडर भी रखा हुआ हैं।

डस्टबिन भी है यहां पर जो कि येलो कलर की है।

और यहां पर दो गमले रखे हुए हैं और यह करकट का घर है।

और यहां पर बहुत सारी बैनर भी लगी हुई है।

यह एक वैवाहिक स्थल है जहां पर पंडित जी दूल्हा दुल्हन और बहुत सारे लोग हैं।

और यहां शादी का प्रोग्राम चल रहा है।

एक आदमी है जो की हवा मिठाई बेच रहा है और यहां पर एक पोस्टर भी लगी हुई है।

और एक आदमी है जोकि हाथ में थैला लिया हुआ है।

इस पे पिंक कलर की झालर लगाई हुई है।

और सिल्वर पेपर बिछाई हुई है दो बकेट रखी हुई है।

और कुछ दूर में एक नारियल का पेड़ भी है और यहां पर एक ग्राउंड भी बना हुआ है।

और बगल में दो असमानी कलर के सेटर भी हैं।

जिसमें की दो द्वार गेट है और यहां पर छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं जो कि ग्रीन कलर की है।

जहां पर ब्लू कलर की बोर्ड लगे हुए है ब्लू हेवन प्लेस कांके रोड लिखा हुआ है।

यहां पर सीलिंग बल्ब जल रही है जो तीन है और यहां का फर्स क्रीम कलर का है।

और यहां का वॉल येलो और ऑरेंज कलर --

यहां पर तीन लड़के हैं जो एक लड़का सेल्फी ले रहा है।